मुझे बहुत सारे काले रंग के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे सूखे गाछ दिखाई दे रहे हैं।

हरे रंग का पहाड़ दिखाई दे रहा है।

पीछे व सफेद रंग के वॉल में कोई एक पोस्टर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तलाब दिख रहा हैं जहां पानी भरा हुआ है।

टेबल के ऊपर सफ़ेद रंग का कुछ रखा हुआ है कागज दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

एक बेड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर चादर रखा हुआ है।

इसमें कई सारे फल दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति हाथ में काले रंग का ग्लव्स लगाए हुए और काले रंग का पैंट और जूता और लगाए हुए खड़ा है।

जिनमें कोई मोटा है और कोई पतला है।

और एक व्यक्ति बाइक में सवार कही जा रहा है।

और आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसके आस पास दो घर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कि ओर आसमान में सूरज कि लाल किरण दिखाई दे रहे है।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

नीचे जमीन पर हरे रंग का कारपेट बिछाया गया है।

जहां हरे रंग का फर्दा लगाया हुआ है।